दुकान लउकता हरियर-हरियर लउकता और बहुत मस्त दिखाई देता।

ई फो ई फोटो में देखावत की एगो बहुत बढ़ियां पंडाल बनल बा कहीं शादी --